ये सीन एक रोड का है जिसमें दो गाड़ियां खड़ी हैं सफेद रंग की जो दोनों ही गाड़ी को आगे और पीछे से खोला हुआ है।

ये एक दुकान है ऋषिकेश मोटरस जहाँ पर गाड़ियों की रिपेरिंग वे डेंटिंग पेंटिंग होती है।

यह चित्र एक रंगोली है का बना हुआ है इस चित्र में एक लैम्प भी खड़ा है।

जिस में पानी के बीच में पत्थर भी पड़ें हैं और बहुत सारी झाड़ियाँ भी लगी हुई हैं आस-पास बहुत बड़े-बड़े पहाड़ हैं।

इस चित्र बहोत ही सौन्दर्य है इस चित्र में पेड़ पौधे लगें हुए है।

ये चित्र एक एल.आई.सी केंद्र का है जिसके बाहर बहोत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और एक स्कूटर भी खड़ा है ये केंद्र लाल रंग का और पीले रंग का है।

ये एक दुकान है जिसमें बहोत सारे समान पड़े हुए हैं कुछ केक है और कुछ केचप भी पड़े हुए हैं और कुछ चीजें पैकेट में बंद हुई हुईं है।

ये एक होटल की तस्वीर है जिस में बहुत सुंदर लाल टन लगे हुए हैं।

पीले रंग के बोर्ड पर लिखा है कार्यालय जिला पं-पंचायत और नीले रंग का इमारत है।